बहुत से आदमी टोटो ले रहे है क्यूंकि इसमे तेल का बचत होता है।

यह एक नृत्यका है यह ना नृत्य कर रही है।

और यहाँ बोत अच्छी तरह से मरीज को देखा जाता है और --

ए एक तरह खाता ही हो गया या पेसा लैन -दैन के काम आता है।

किराये पर रहते है और पैसा भी देते है और ये घर बहुत बड़ा है और यहां बहुत रूम भी है।

और यह मंदिर के आमने-सामने बहुत पेड़ भी है यह पेड़ बहुत हरियाली भी है।

यह डेम से मछवारे लोग मछली पकड़ के अपना गुजरा करते है ओर यै डेम मे कई बोट भी चलते है ।